मस्त लोकेशन है ये और नीचे पानी है।

ये जगह मेरे को काफी खूबसूरत दिख रहा है।

जोकि दिखने में और भी सुंदर दिख रहा है।

यह एक तालाब है इसमें से शायद से कोई पूजा वगैरह या फिर कुछ भी हो रहा है।

जो की कोई भी दिक्कत ना हो किसी को और आगे भी घेरा हुआ है।

उसमें से एक बच्चा जा रहा है झरने का मजा लेने ऊपर से काफी लत वगैरा लगे हुए जो की दिखने में काफी बेहतरीन लग रहे हैं।

और दिखने मे काफी अच्छा।

यह कोई घर वगैरा है जिसके नौ में--

ये एक खिलौने का दुकान है।

इसके एक बड़ा सा पोस्टर लगा हुआ है।

और बाहर एक एक एक आदमी दूसरे जन से बात कर रहा है उसके पीछे एक घड़ी टागा हुआ है।

यह एक क्लिनिक है जिसमे से एक नर्स बैठी है।

फुले बहुत ही अच्छा हमको देखने को मिल रहे है जोकि पीला कलर मे है और रानी कलर मे है।

सफेद में भी है और अन्य प्रकार के कई कलर में है।

सब लोग देख रहे है यहाँ पे पार्टी वगैरह मना रहे है।

दौड़ते हुए नजर आ रहे हैं।

और ये जगह बहुत ही बड़ा--

बालूरघाट एयरपोर्ट नाम से कुछ है।

और यह झरना काफी सुंदर दिखने में लग रहा है।

बहुत ही चुकी साइड साइड में हर जगह लिखा हुआ है।